इधर एक गंगा की साइड में कठोता है ना कि कोई घाट भाट--

दो आदमी देख रहा है। एक आदमी इधर से आ रहा है। ब्लू कलर -का गेंजी पहन के।

टेंट जैसा कुछ बना हुआ है। लाइटिंग व्हाइटिंग तो बहोत मजेदार जबरदस्त। बहोत सारे जनता है जो देख रहा है ऑडियंस है।

उधर उधर सब कुछ दिख रहा है। बहोत ज्यादा उब मतलब बेलून जैसा लग रहा है। लेकिन वो लाइटिंग्स है।

पर इधर दिख रहा है। एक फ्लैग दिख रहा है ब्लू कलर का उधर भी दिख रहा है । बहोत अच्छा अच्छा व्यू है यार।